ये यहां पे मोटरसाइकल है ये लोग मोटरसाइकल को ठीक कर रहे हैं।

यहां पे मेज कुर्सियां बहुत अच्छे हैं।

यहां पे बहुत निजा निजारा बहुत अच्छा है यहां पे डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं।

यहां पे पेड़ बहुत अच्छा है यहां पे--

यहां पे कुर्सियां भी बहुत है यहां पे भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं।

है इस ये नजारा बहुत अच्छा है।

ये यहांपे बहुत नजरा अच्छा है।

यहां पे ऑटो रिक्शा बहुत है।

ये दीवारें पे लाइट बहुत अच्छे हैं।

यहां पे नेजारा बहुत अच्छा है यहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए--

यहां पे बहुत लोग रेहते हैं।

ये यहां पे सुंदर बहुत हैं यहां पे लोग भी बहुत खूबसूरत हैं।

यहां पे मारुति भी बहुत अच्छी है यहां पे बादल--

ये पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं।

यहां पे जंगल पौधे पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत है यहां पे लड़के बहुत खूबसूरत है यहां पे ल--